यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं। वह टाइ लगाए हुए हैं और कई प्रकार का काम कर रहे हैं। वह पेपर से कुछ बना रहे हैं।

और यहाँ पर टेबल भी डली हुई है।

वह लाल कलर की शर्ट मे लोगों को समझा रहा है और एक गले मे आई कार्ड डाले हुए बैठा है और लैपटॉप भी रखा --

यहाँ पर काम चल रहा हैएक मजदूर बोरियाँ रख रहा है ट्रक में और एक ला रहा है ।

और नीले कलर की टीशर्ट पहने हुए है।

और ये औरत घड़ी भी पहनी हुई है और फूलों से भी सजा हुआ है।

यहाँ पर तीन महिलाएं हैं वह सलवार सूट पहन के योग कर रही हैं।

बहुत सारे हरे कलर के गमले भी रखे हुए हैं और पेड़ भी दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं।